इस तस्वीर मे हमे एक कार दिखाई दे रही है कार की रिपेरिंग चल रही यहा पे एक लड़का जो इसे रिपेअर कर रहा है वो जो कार के अंदर बैठा हुआ है इसने रेड कलर का और पिंक कलर का--

तस्वीर मे हमे एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन मे बड़े बड़े पेड़े लगे हुए है और पेड़ के अलावा यहा पे छोटे छोटे श्रुब्स लगे हुए है और उसके अलावा दुर्वा लगी हुई है।

यहा पे दूसरे लड़का है इसने पिंक कलर का और ब्लॅक कलर का जेकिट पहन रखा है उसमे व्हाईट क--

और इसके अलावा उसकी एव पैर-पेर का कलर का थोड़ा रेड दिखाई दे रहा है हमे यहाँ पे--